एक हल्का नीला रंग का छोटा घर है जिसकी छत लाल रंग की है।

मौसम धुंधला है शायद ठंड के समय है।

यह तस्वीर एक कक्षा में डेस्क पे बैठे लोगों की एक समूह को दिखाती है।

झील का पानी शांत और साफ है जिसमें आसपास के बादलों का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है।

एक पाइप भी दिखा रहा है जो शायद कंक्रीट को ट्रांसफर करने के लिए है।

मैदान के किनारो पर कुछ दर्शक दिखाई दे रहे हैं।

बिल्डिंग के सामने पोर्टल प्लांट्स की लाइन है कुछ बड़े पेड़ भी दिख रही हैं।

बैकग्राउंड में सजावट दिख रही है।

घर बांस या लकड़ी से बना हुआ दिखाता है और इसकी दीवारें रंगीन पैटर्न से सजी हुई है।

नदी में कुछ लोग मछली पकड़ रहे हैं और कई लोग नहा रहे हैं।

यह एक बुध्दा मंदिर है जो पीले और लाल रंग से पेंट किया गया है।

यह तस्वीर एक शोरूम में खड़ी कई स्कूटीयों को दिखाती है।

एक आदमी ने नीले रंग की कमीज पहनी है और वो बाकी लोगों से अलग दिख रहा है।

दृश्य एक बड़ी मैदान का है।

यह एक पुस्तकालय या दिन कक्ष का अंदर का दृश्य है।

ये सेटिंग एक कुछ चार्ज हॉल के अंदर लगती है।

दीवारों पर रिलीजियस थीम्स वाली पेंटिंग्स लगी हुई है।

स्तंभ पर ऊपर से नीचे तक कई छोटी छोटी मूर्तियां और कलात्मक नकाशी की गई है।

ये मूर्ति किसी म्यूजियम या प्रदर्शनी में रखी गई लगती है।

पत्थर बड़े हैं और वहां बैठने के जगह बन रहे हैं।

एक गली रोड कैंपिंग साइड से गुजर रही है।

छत पर पारंपरिक कलीकृतियों का डिजाइन है।

स्थान बहुत ही शांत और साफ सुथरा दिख रहा है।

रेस्टोरेंट के आगे लाल और सफेद रंग के बेड लगा हुआ है।

दुकान मे शेल्फ है जिन पर बहुत सारे सामान रखे हुए हैं।

रात का समय है रंग बिरंगे लाइट्स लगाए हुए हैं।